कुछ खिड़कियां लगी हुई है उसमे से रोशनी आ रही है कुछ खिड़कियां लगी हुई है सामने एक मंदिर बना हुआ है।

सामने कुछ गाड़ी रखी है पीछे रखी हुई है शटरे बगल मे एक बॉन्ड बनी है।

और सामने कुछ अ अ अ मशाल सी बनी हुई है और कुछ अ जमीन का रंग कलर का और कुछ लोग खड़े हुए है एक गाड़ी आई --

ऊपर एक मूर्ति और पीछे है पिले रंग की दिवार उस पर बनी है कुछ पेंटिंग और पीछे रखा हुआ एक गोला सा कुछ छत का रंग हैं।

और सुंड उनकी लड्डू खाने के लिये उठ रही है पीछे एक नदी बह रही हैं और कुछ पत्ते डले हुए बगल में कुछ पेड़ लगे हुए हैं मोर मूर्ति बहुत सुंदर दिखायी दे रही हैं।

और झूला एक लाइन से उठ रहा है इधर की साइड कुछ और झूले लगे हुए है आसमानों मे बादल दिखाई दे रहे है एक पेड़ की टहनियाँ भी दिखाई दे रही है जमीन स्लेटी कलर की।

कुछ-कुछ झूले लगे हुए है और जमीन पर झूले लगे हुए है कुछ सरपट्टियाँ बनी हुई है एक सामने झोपड़ी सी बनी हुई है ।

पेड लगे हुए इधर की साइड मे केसे पेड़ लगे हुए है एक पेड और लगा हुआ है।

छोटी मूर्तियाँ है तो कुछ बड़ी मूर्तियाँ कुछ मूर्तियाँ खड़ी है तो कुछ लेटी है कुछ ऊपर बनी हुई है कुछ गुम्बंद बनी हुई है एक एक झंडा लगा हुआ है जो ऑरेंज कलर का है छत्त लगी है।